यहाँ एक बहुत ही सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है आसमान हाल ब्लू कलर का और सफेद कलर का दिखाई दे रहा हैं।

और एक लेडीज मछली को खरीद रही है।

यह एक द्रश्य हे जिसमे आकाश सफ़ेद पर्पल और ग्रे कलर का दिखाई दे रहा है कुछ हर भरे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है।

यह एक डोसा है जिसके साथ चटनी रखी हुई है ये एक सफेद कलर की प्लेट में रखी हुई हैं।

यह यहां पे बैंक है और यहां सामने सड़क हैजहां पे दो लेडिस जा रही है

यह एक ऐसी जगह है जहा पर घास फूस लगी हुए है एक रास्ता दिखाई दे रहा है और दूर दूर घर बिल्डिंग दिखाई दे रहे हैं।

आसमान भी नीले और सफ़ेद कलर का दिखाई दे रहे है और एक नीचे गाड़ी रखी हुई है फॉर व्हीलर जो की सिल्वर कॉलर की दिखाई दे रही है।

ये एक घर दिखाई दे रहा है जिसके सामने बहुत सारे जुत्ते और चप्पल उतरे हुए है एक पेड़ है।

यहाँ एक घाँस का मैदान दिखाई दे रहा हैं जहाँ पे हरी और और कुछ घाँस लगी हुई हैं दूर से कुछ पेड पौधे भी नजर अ रहे हैं ।